यहाँ पे सोफे के पीछे भी बहुत सारे यहाँ पे पिंक एंड रेड क वाइट कलर के पर्दे लगे हुए है दो तीन --

एक एक ग्रीन कलर का म मकान बना हुआ है ग्रीन एंड वाइट कलर का पुता हुआ है ऊसके अंदर भी पेड़ पौधे --

एक बड़ा सा नीम का पेड़ दिया हुआ है यहाँ पे जो मकान का गेट है वो अभी ग्रीन कलर का है ओर ब्लू यलो कलर के उसमे गोल्डन कलर के हाथ पकड़ने के हत्ते लगे हुए है गेट के अंदर गेट के उस पार भी मकान अंदर रूम वगैरा बने हुए चद्दर ल --

ये फ्लॉवर्स हैं ये उनमें अ उनमें पीछे ग्रीन कलर ये येल्लो कलर के फ्लॉवर्स हैं और ग्रीन कलर के उनके पीछे डठल लगे हुए हैं एंड वो बोहोत सारे पड़े हुए हैं। बड़े-बड़े फ्लॉवर हैं खिले-खिले बहोत प्यारे लग रहे हैं ये पड़े हुए --

यहाँ पे फूलों के दो हार टंगे हुए है वाइट कलर के हार टंगे हैं ये ऑरेंज कलर के हार टंगे हैं वाइट कलर के हार के बीच में उ कुछ रोजेज भी लगे हुए हैं।

ये यहाँ पर एक पेंटिंग वगैरह कुछ बनी हुई है शीट रखी हुई है वाइट कलर की उसके ऊपर शीड से कुछ बनाया गया है एनिमलस बनाए हुए है बर्ड वगैरह बनाई हुई है।

ये किसी रैली निकली है बारात निकल रही है चाहे ट्रेक्टर के ऊपर बारात निकल रही ट्रेक्टर के उ पूरा डेकोरेट किया हुआ है पीछे से ड्राइवर बैठा है आगे --

ये एक अ मोबाइल शॉप है। यहाँ पे वीवो के बहोत सारे मोबाइल रखे हुए हैं वीवो के रखे हैं रियलमी के रखे हुए हैं रेडमी के रखे हुए हैं सैमसंग वगेरा के रखे हुए हैं जिओ फ़ोन --